यहाँ पर एक चाट की कढ़ाई रखी गई है कढ़ाई की ऊपर एक चम्मच रखी गई है। ये--

यहाँ पर बहुत सारे पर्दे दिखाई दे रहे हैं पर्दे जो है काफी कलर्स में हैं देखने पर लग रहा है ये पर्दो की दुकान है इसमें जो कलर्स बनए हैं वो रेड है।